यह कोई नई साइकिलों साइकिल की शॉप है यहां पर बहुत सारी साइकिलें लाइन से खड़ी हुई हैं।

यह किसी मस्जिद का चित्र है जो कि वाइट कलर में बनी हुई है और जिसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने अपनी टांग पत्थर पे रख रखी है।

सामने एक रेड कलर की कुर्सी पड़ी हुई है और एक स्मोक ग्रे कलर का स्टूल भी रखा हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं।

चित्र में दिख रही बिल्डिंग ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र है जो कि अह ब्राउन कलर में बनी हुई है।

सामने बस स्टेशन चारबाग का बोर्ड लगा हुआ है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क पर्यावहन निगम लिखा हुआ है।

दो गद्दियाँ रखी हुई हैं जिनमें से एक को पोछ रहा है।

सामने दिवाल पे कुछ पेंटिंग भी लगी हुई नजर आ रही है।

सामने शीशे पे लाइट पड़ रही है और ऊपर एक एग्जॉस्ट और फैन लगा हुआ है।

चित्र में बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं।

और पे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वाइट और रेड कलर का पेंट किया गया है।

बगल में कोकोकोला की बोतल सर्फ एक्सेल नहाने के लिए शैंपू और म्म सेंट और अ --

द बेस्ट चॉइस नाम का कैफे ग्रिल आप अवध एंड बेकर्स है।

मात्र थ्री नाइंटी नाइन और टू फोर्टी नाइन के प्राइज में है।

और पीछे के पिंक ऑरेंज कलर की दो छत बनी हुई है जिस पे--

किसी किसी के पत्ते भी रेड है और उसमें बीच बीच में जगह भी दिख रही है।

अर के पीछे घर भी नजर आ रहा है जो की वाइट कलर में है।

यह किसी कंसेंट की फोटो है जिसको लोकल फूड फिस्ट भी कहते हैं।

ऊपर इसके एडवर्टाइज लगा हुआ है जिसमें ज़ी फाइव और भी बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं।

दूर दूर तक अच्छी सफाई नजर आ रही है।

एक मस्जिद का चित्र है यहां पर एक व्यक्ति ब्राउन कलर का कुर्ता व्हाइट कलर का पायजामा और सफेद टोपी लगाकर खड़ा हुआ है।

जो नाई है उसने उसको नीले कलर का एक ओढ़ने वाला पेहना रखा है।

शीशे के सामने एक माजा की बोतल रखी हुई है और भी छोटी छोटी बोतलें रखी हुई है।

पन्नी चिपका रखी है जिसके अंदर पीले और लाल कागज नजर आ रहे हैं।

यह किसी फंक्शन के जा अंदर जाने का रास्ता है जिसे पर्दों से सजाया गया हुआ है।

चित्र में एस_बी_आई बैंक दिख रही है जिसका बोर्ड काफी बड़ा है जो ब्लू ब्लू कलर में है।

ये किसी वाटर पार्क का चित्र है जिसमें खूब बहुत जगह पानी दिख भरा हुआ दिख रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

दूर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा भी नजर आ रहा है।

यह यह किसी पार्क का फुटपाथ है जो रेड कलर का है और उसके बगल में सोलर पैनल लगे हुए हैं।

इस पार्क में एक स्ट्रीट लाइट के जैसे खंभा लगा हुआ है जो चारों तरफ रोशनी देता है।